पीछे की तरफ एक व्यक्ति बैठा है ऊपर काफी लाइट्स का अट्रैक्शन आ रहा है यहाँ पर यहाँ सब जगह अलग-अलग बुक्स लगे हुए है सेल्फो में।

सामने एक पारक नजर आ रहा है जहाँ पर छोटे मोटे पेड़ पौधे और घास-फूस लगा हुआ है।

यहाँ सामने की तरफ दो टेंट नुमा गुंबद से नज़र आ रहे है पीछे की तरफ एक रिबन टाइप एक छत बनी हुई है।

यहाँ सामने की तरफ बड़े से गेट के सामने एक सफेद रंग की कार है जिसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है नीली ड्रेस मे उसने मास्क पहना हुआ है अंदर की तरफ एक दो पोल भी खड़े है बिजली के।

सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही है जो डबल फ्लोर मे बनी हुई है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बिल्डिंग के बाहर बास के बड़े बड़े पाइप पड़े हुए हैं।

सामने की तरफ एक टीन नुमा छत का हॉल नजर आ रहा है जहाँ पर एक कार खड़ी है एक जिप्सी खड़ी है कुछ छोटे छोटे स्टेप काउंटर भी पड़े हुए है टर्निंग जैसे यहाँ एक कार के आगे रेड टी शर्ट मे दो व्यक्ति खड़े हुए है।

और उससे पीछे काफी बड़ा सा पहाड़ नजर आ रहा है जिस पर काफी पेड़ भी है छोटे-मोटे और बड़े भी है।